यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं।

अभिषेक डिजिटल वर्कशॉप का बोर्ड लगा हुआ है।

डिब्बे रखे है फेविकोल के और समान रखा है।

धरम कांटा का बोर्ड लगा हुआ है फोन नंबर दिया हुआ है।

घर बनी हुई हैं पेड़ लगे हुए है रोड बना हुआ --

राहुल ट्रैक्टर्स पार्ट्स की दुकान का बोर्ड लगा हुआ हैं।

कुर्सी रखी हुई है डिब्बे हैं टोफियां रखी है।

बच्चे पड़ रहे हैं पौधे लगे हुए हैं एक बच्चा बाहर घूम रहा है गमले रखे हुए हैं।

तार लगी हुई है बिजली की घर बना हुआ है पेड़ लगा हुआ है।

पहाड़ी बनी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए हैं पानी बह रहा है नदी बनी हुई है।

ग्राहक सेवा केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है कुर्सी रखी है पेड़ लगा है टीन पड़ी हुई है।

खेल रहे हैं लगा है पानी का नल लगा हुआ है कुर्सी रखी हुई है।